स्टेशन में कुल चार पटरी होने का संकेत भी मिल रहा है।

इस स्टेशन के दाएं तरफ बिल्कुल खाली है।

यह चित्र गेंदे फूल का है।

दो आदमी पैदल चलते हुए गेट के तरफ जा रहे हैं।

गेट के ऊपर एक बोर्ड है जो नीला रंग का है।

स्कूल तीन मंजिला मकान है।

यह स्कूल एक उच्च विद्यालय है।

स्कूल का नाम पीटर बेल इंग्लिश स्कूल है।

होटल के अहाते को झाड़ियों से सजाया गया है।

बौद्ध की मूर्ति को सफेद रंग से रंगा हुआ हैं।

चित्र में एक तलाब दिखाई दे रहा है।

साथ में एक मेज और एक चेयर भी रखा हुआ है।

यह एक होटल का चित्र है।

होटल का नाम बाहर बोर्ड में लिखा गया है।

होटल के बाहर दाहिनी तरफ एक हरा बाल्टी रखा गया है।

दर्शक सभी स्टेज के तरफ मुंह कर के बैठे है।

इसमें दो लड़का का चित्र आधी दिख रही है।

यह एक गेस्ट हॉउस का चित्र है।

डेकोरेशन किया गया कपड़े का रंग हल्दी और लाल है।

घर के बाएं तरफ दांत का डॉक्टर का बोर्ड है।